और झूले को एक नीले रंग के डंडे से--

इनके अंदर बैठने के लिए लकड़ी का एक ढांचा रखा गया है और मेज के ऊपर कुछ बोतलें भी मजूद हैं जो कि शीशे की है और--

सवार होने के लिए आ रहा है जिसने नीले रंग की शर्ट पहनी है।

पेड़ मौजूद है और ये मैदान काफी बड़ा है और पेड़ भी काफी पड़े हैं जो भी शायद खजूर के हैं।

यहां पर कुछ भारतीय नागरिक मौजूद है और इनमें एक बच्चा भी है और तकरीबन तमाम नागरिकों ने--

जबकि इसकी बाहिर में मौजूद दरवाजों को लाल रंग दिया गया है जो कि काफी बड़े-बड़े हैं और लोहे के हैं और इसके बाहिर--

रखी गई प्लास्टिक की छत को बादामी रंग दिया गया है और नीचे भी जमीन पर खूबसूरत डिजाइन बनाया गया है जो के लाल रंग का है।

तीन सीढ़ियों पर चल रही है जिनमें से एक नागरिक ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं जबकि दूसरे नागरिकों ने मुक्तलिफ रंग के कपड़े--